आस-पास आदमी आ जा रहे हैं।

और आसमान भी काफी काला दिख रहा है।

यहां पर लड़कों के कपड़े मिल रहे हैं।

ये सब एक छोटी सी गमले हैं।

ट्रेन के डब्बे में काफी लाइटें लगी हुई हैं।

और काफी लोग उनसे खरीदारी कर रहे हैं।

बिल्डिंग के बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ है।

जहां पीले रंग की बहुत सारी--

जिसके आसपास छोटी गाड़ियां हैं।

और काले रंग का एक ऑटो खड़ा है।

ये चित्र सड़क का है।

एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा है।

ये चित्र में एक रिजॉर्ट की है।

बीच में एक चौकाने वाली जमीन बनी है।

ये तस्वीर एक रेस्टोरेंट की है।

ये तस्वीर में कुछ लोग--

पानी के अंदर पूजा कर रहे हैं।

ये तस्वीर एक बड़े सारे हाल की है।

यह तस्वीर किसी अस्पताल की है।

और अलमारीयों में भी बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

और अलमारियों में कांच लगे हैं।

ये एक खेत की तस्वीर है।

जिन पर पानी की बौछार हो रही है।

ये चित्र एक पारक का है--

और एक हरे रंग की रस्सी का गुच्छा भी लटका है।

ये चित्र एक मैदान का है।

एक आदमी फल की टोकरी के पास खड़ा हुआ है।

उसके नीचे सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है।

और काफी सारी दीवार पर--